थ्री तीन ट्रैक्स है पटरियों के और--

यहां पर एक रनर मशीन पे रनिंग कर रहा है।

और एक छोटा सा मैदान दिख रहा है मुझे--

लिए जूते ट्राई कर रहे हैं पसंद करें हैं जूते यहां पर हर प्रकार के जूते है।

और यहां पर बहोत ही अच्छे से जो है सुसज्जित किया गया है।